लाइट लगा है बड़ा -सा टी_वी है खिड़की है ।

और यहाँ पे बहोत ही अच्छा घास लगाए गए है।

बे बड़ा सा घर भी दिख रहा है बहुत बड़ा-बड़ा पेड़ भी है अगल-बगल में--

उस के बगल में लाइट लगा हुआ है एक प पेड़ है पौधा है ।

दिख रहे है पीला कलर का है ब्लैक है इसमें लाल भी है इसके नीचे--

अ उसके ऊपर और सफेद कलर का कुछ रखा गया है ब्लैक कलर का कछ कुर्सी हैं |

उसके आगे भी एक टेंट लगा हैं।

केला है सेब है संतरा है अंगुर है।

उसके ऊपर बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है जिसमें क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़--

एवं बोट है तार है लाइट जल रहा है टेबल है कुर्सी है।